यह बहुत सारी पेंटिंग हैं।

यहां पर चार आदमी बैठे हुए है और एक आदमी कुछ सिखा रहा है।

यह एक फर्नीचर की दुकान है।

और एक नीले कलर की बोतल रखी हुई है।

एक सफेद कलर की प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है।

जिसमें बहोत सारे सोफे रखे हुए हैं और एक लकड़ी की मेज रखी हुई है।

जिसमें पंखे और वाइट कलर के पाइप नजर आ रहे हैं।

यह बहुत बड़ा मेला है जिसमें बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

इसमे एक लकड़ी का काउंटर रखा हुआ है।